यहां ओपन जिम लिखा हुआ है।

टेंट के नीचे कई लोग बैठे हुए हैं।

यहां का हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है।

इधर दीवार लाल रंग की है।

लोगों ने सर पर ऑरेंज कलर का कपड़ा भी बांधा हुआ है।

यहां तीन लैंप लटक रहे हैं।

एक अंकल स्लाइड पर बैठे हुए हैं।

यहां कई लोग छत पर खड़े हैं।

यहां हरे घने पेड़ दिख रहे हैं।

यहां बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं।

खम्भे के पीछे बहोत सारे लम्बे पेड़ है।

दरवाजे पर ताला लगा हुआ है।

यहां एक लाल रंग की कुर्सी भी है।

यहां एक लड़का चल रहा है।

यह केनरा बैंक का बोर्ड है।

गमलो में हरे पौधे हैं।